जीचेम्पेंट में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने के लिए भिन्न प्रकार के एरोस उपयोग करना और एक परमाणु पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन युग्मों को जोड़ना
इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1204 जीचेम्पेंट वर्जन 01210 इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको जीचेम्पेंट के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
मैं जीचेम्पेंट विंडो पर जाउंगी
मैंने एक नयी जीचेम्पेंट विंडो खोली है
यहाँ आप इथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड के स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं
मैं दर्शाउंगी कि carbo केशन को कैसे प्राप्त करें
अब इथाइल क्लोराइड के क्लोरीन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन्स का एक युग्म जोड़ते हैं
एड एएन इलेक्ट्रॉन पैर टूल पर क्लिक करें
क्लोरीन परमाणु पर क्लिक करें और देखें क्या होता है आगे मैं इलेक्ट्रान युग्म को कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पर शिफ्ट करना दर्शाउंगी
एड आ कर्व्ड अरो टो रिप्रेजेंट एएन इलेक्ट्रॉन पैर मूव टूल पर क्लिक करें
प्रॉपर्टी विंडो खुलती है
इंड अरो एटी सेंटर ओएफ न्यू बोंड चेक बॉक्स पर क्लिक करें
यह इलेक्ट्रान युग्म को सही स्थिति पर खिसकाता है
कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पर क्लिक करें
कर्व्ड एरो पर कर्सर रखें और इलेक्ट्रान शिफ्ट को देखें
मैं इस स्ट्रक्चर की प्रति बनाउंगी
अब एड एएन अरो पर क्लिक करें और स्ट्रक्चर्स के बीच में क्लिक करें
कार्बन कैटायन के बनने की शुरुआत सोडियम हाइड्रॉक्साइड जैसे बेस द्वारा की जाती है
एड ओर मॉडिफाई आ ग्रुप ओएफ एटम्स टूल पर क्लिक करें एरो के ऊपर क्लिक करें
नाओह टाइप करें
सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें और नाओह सेलेक्ट करें
एरो पर राइट क्लिक करें
सबमेन्यू में एरो सलेक्ट करें
अटैच सिलेक्शन टो अरो पर क्लिक करें
अरो एसोसिएटेड शीर्षक के साथ डायलॉग बॉक्स खुलता है
रोले ड्राप डाउन में रिएक्टेंट सलेक्ट करें और क्लोज पर क्लिक करें
अब दूसरे इथाइल क्लोराइड को इथाइल कार्बन कैटाइअन और क्लोराइड आयन्स से बदलें
इरेजर टूल पर क्लिक करें और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पर क्लिक करें
इथेन और एचसीएल बनते हैं
जब इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से क्लोरीन पर शिफ्ट होते हैं तो कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज की वृद्धि होती है
इंक्रीमेंट थे चार्ज टूल पर क्लिक करें
उस स्थिति पर क्लिक करें जहाँ से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड मिटाया गया था
इथाइल Carbo cationch3 च2 बन गया है
क्लोराइड आयन बनाने के लिए डिक्रीमेंट थे चार्ज टूल पर क्लिक करें
एचसीएल पर क्लिक करें
क्लोराइडसीएल आयन बन गया है
अब सिंगल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट पर जाते हैं
अब फ्री रेडिकल्स प्राप्त करने के लिए मिथाइलब्रोमाइड स्ट्रक्चर प्रयोग करें
एड आ कर्व्ड अरो टो रिप्रेजेंट आ सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव टूल पर क्लिक करें
कर्व्ड एरो प्राप्त करने के लिए मिथाइलब्रोमाइड बॉन्ड पर क्लिक करें
पेंसिल टूल थोड़ा सा बॉन्ड पर शिफ्ट करें दूसरा कर्व्ड एरो प्राप्त करने के लिए दोबारा क्लिक करें
एक एरो ब्रोमो की तरफ और दूसरा एरो मिथाइल की तरफ जाता है
ब्रोमो और मिथाइल दोनों बॉन्ड किये हुए इलेक्ट्रॉन युग्म से एक एक इलेक्ट्रान प्राप्त करेंगे
उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक एरो जोड़ते हैं
एड एएन अरो पर क्लिक करें मिथाइलब्रोमाइड के पास डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
फ्री रेडिकल्स की उत्पत्ति अभिक्रिया में हीट शामिल करती है
एड ओर मॉडिफाई आ टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें
एरो के ऊपर डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
हरे बॉक्स में हीट टाइप करें
सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें और हीट सलेक्ट करें
एरो पर राइट क्लिक करें
सबमेन्यू में अरो सलेक्ट करें और अटैच सिलेक्शन टो अरो पर क्लिक करें
अरो एसोसिएटेड शीर्षक के साथ एक डायलॉग बॉक्स खुलता है
ध्यान दें कि रोल ड्राप डाउन सूची अधिक विकल्प रखती है
रोल ड्राप डाउन में टेम्परेचर सेलेक्ट करें और क्लोज पर क्लिक करें
अब फ्री रेडिकल्स बनायें
मैं इस स्ट्रक्चर की एक प्रतिलिपि बनाउंगी
इरेजर टूल पर क्लिक करें और कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड पर क्लिक करें
मीथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गए हैं
एड एएन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूल पर क्लिक करें
मीथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर क्लिक करें
मिथाइल और ब्रोमियम फ्री रेडिकल्स बन गए हैं
सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें
अभिक्रिया पाथवे बनाने के लिए सबसे पहले पूरी अभिक्रिया सलेक्ट करते हैं
अब सलेक्शन पर राइट क्लिक करें
एक सबमेन्यू खुलता है
क्रिएट आ न्यू रिएक्शन पर क्लिक करें
अभिक्रिया पाथ बन गया है
अभिक्रिया पाथवे को देखने के लिए इसे खींचें
इसी प्रकार मैं पिछली अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया पाथवे बनाउंगी
अगर हम चाहें तो हम अभिक्रिया पाथवे को हटा भी सकते हैं
ऐसा करने के लिए अभिक्रिया पर दोबारा राइट क्लिक करें
डेस्ट्रॉय थे रिएक्शन पर क्लिक करें
यह क्रिया अभिक्रिया पाथवे को हटा देगी
किसी भी एक ऑब्जेक्ट को खींचें और आप देखेंगे कि ये अलग अलग चल सकते हैं
अब डबल हेडेड एरो प्रयोग करके हम रेजोनेंस और मेसोमेरी की ओर चलते हैं
मैंने नाइट्रोमेथेन के स्ट्रक्चर्स के साथ एक नयी जीचेम्पेंट विंडो खोली है
मैंने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स दर्शाने के लिए स्ट्रक्चर्स में कर्व्ड एरोज़ और चार्ज जोड़े थे
अब एक डबल हेडेड एरो जोड़ते हैं
एड आ डबल हेडेड अरो पर क्लिक करें
नाइट्रोमेथेन के बीच डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
ये दो स्ट्रक्चर्स नाइट्रोमेथेन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं
स्ट्रक्चर्स सलेक्ट करने के लिए CTRLA दबाएं
सलेक्शन पर राइट क्लिक्क करें
एक सबमेन्यू खुलता है
क्रिएट आ न्यू मेसोमेरी रिलेशनशिप पर क्लिक करें
सम्बन्ध देखने के लिए इसे खींचें
यहाँ बेंज़ीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के लिए स्लाइड है
अब रेट्रो सिन्थेटिक पाथवे बनाना सीखते हैं
मैंने आवश्यक स्ट्रक्चर्स के साथ एक नयी जीचेम्पेंट विंडो खोली है
रेट्रो सिन्थेटिक पाथवे सभी मध्यवर्तीयों के साथ उत्पाद से शुरू होता है और अभिकारक को जाता है
इस पाथवे में आखिरी उत्पाद ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और शुरुवाती वस्तु बेंज़ीन है
अब रेट्रो सिंथेटिक पाथवे दर्शाने के लिए रेट्रो सिंथेटिक एरो जोड़ें
एड एएन अरो फोर आ रेट्रोसिंथेटिक स्टेप पर क्लिक करें
सारे कंपाउंड्स के बीच में क्लिक करें
सारे स्ट्रक्चर्स को सलेक्ट करने के लिए CTRLA दबाएं
सलेक्शन पर राइट क्लिक करें
एक सब मेन्यू खुलता है
क्रिएट आ न्यू रेट्रोसिंथेसिस पाथवे पर क्लिक करें
बनाये गए पाथवे को देखने के लिए इसे खींचें
अब सारांशित करें कि हमने क्या सीखा
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा कर्व्ड एरोज़ उपयोग करके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स दर्शाना अभिक्रिया की कंडीशंस को अभिक्रिया के एरोज़ पर जोड़ना
अभिक्रिया एरो का उपयोग करके अभिक्रिया पाथवे को बनाना और मिटाना
डबल हेडेड एरो उपयोग करके एक नया मीसोमेरी सम्बन्ध बनाना
रेट्रो सिंथेटिक एरो उपयोग करके रेट्रो सिंथेटिक पाथवे बनाना
एक नियत कार्य की तरह एरो प्रोपर्टीज़ उपयोग करके 1
ब्यूटेन और सोडियमब्रोमाइड प्राप्त करने के लिए ब्रोमो इथेन और सोडियम की विलायक ड्राईईथर के साथ की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का पाथवे बनायें
अभिक्रिया के अणुओं पर स्टॉइचोमीट्रिक कोअफिशन्ट जोड़ें
नैप्थेलीन एन्थ्रासीन और कार्बन डाईऑक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनायें
यह अपेक्षित अभिक्रिया पाथवे है
ये नैप्थेलीन एन्थ्रासीन और कार्बन डाईऑक्साइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं
इस उर्ल पर उपलब्ध विडिओ देखें
httpspoken tutorialorgWhat is a Spoken ट्यूटोरियल यह स्पोकन ट्यूटोरियल को सारांशित करता है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
अधिक जानकारी के लिए क्रपया contactspoken tutorialorg को लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद